सब बॉय्ज़ है। एक यह पहले मैट डाल लेते है नीचे उसके ऊपर चढ़के योगा करते है ये। अ ये कोई पांच छः- छः बच्चे है ये।

काफी सारे लोग है कुर्सियाँ है अच्छा लग रहा है काफी।

हा ये कोई ब्लड डोनेट कंपनी लग रही हैं। कोई विश्व रक्तदाता नाम कर के कोई कंपनी हैं जो की इस लड़की को सम्मान दे रहे हैं।